इस पिक्चर में हम देख सकते है रैक्स वगैरा रखे हुए देखने को मिल रहे है और उसके अंदर रखे हुए कुछ रोजमर्रा की चीजे हमे इस्तेमाल में लाने वाली चीजे दिख रही है।

पिक्चर में हम देख सकते हैं हमें दो लोग नजर आ रहें हैं एक अ मोटरबोट पे चलते हुए भागते हुए उसको दौड़ते हुए जो कि पानी के अंदर जा रही है भाग रही है काफी तेजी से।

इसके साथ में भी एक और है हम देख पा रहे है नीचे टाइल्स से बना हुआ एक रास्ता हमें नजर आ रहा है और साइड में दोनों तरफ काफी हरी-हरी घासे सी पौधे से उगे पड़े हैं।

देख पा रहे है साइड मे हमे एक मिरर भी दिख रहा है जहाँ पे बॉटलस रखी हुई है दो नीचे और एक जग जैसा कुछ रखा हुआ है।